सॅन्टा नेशनल फॉरेस्ट का बोर्ड लगा हुआ दिखाई दे रहा है आसमान दिखाई दे रहा है।

और सड़क पे कच्ची सड़क पे कुछ लोग जाते हुए दिखाई दे रहे है दो पैया वाहन खड़े हुए दिखाई दे रहे और चारो तरफ हरियाली के बिछो-बिछ एक मस्जिद दिखाई दे रही है।

हरे-हरे पेड़ लगे हुए दिखाई दे रहा है। रास्ता दिखाई दे रहा है। जो इसके आसपास डब्बे रखे हुए लाल-लाल --

ये तस्वीर अस्पताल के दिखाई दे रही है जिसमे एक बड़ा हॉल दिखाई दे रहा है।